और ऊपर से दो लाइन लाइट के जा रहे हैं जो सफेद रंग के हैं और दीवार सफेद रंग में किए गए हैं।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

बने दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे गाड़ियां पार्क और स्कूटी पार्क की हुए स्कूटी का रंग सफेद है और गाड़ियां काले कलर की है।

यह एक छोटा सा शॉप है जहां पर तरह-तरह की मछलियां कांच में रखी हुई है और कुछ दुकान के बाहर चिप्स कुरकुरे के पैकेट --

और यहां पर कांच के अंदर मछलियां और हरे-हरे छोटे-छोटे पौधे दिख रहे हैं।

कार दिखाई दे रही है जिसका गेट खुला हुआ है कार के के ऊपर एक नीले रंग की--

यह एक बहुत ही बड़ा होल रूम है जहां पर स्टेज बना हुआ है और ढेर सारी अनगिनत कुर्सियां लगी हैं कुर्सियों पर सफेद रंग की चादरें--

पीले रंग का दुपट्टा पहनाया गया है और बहोत बड़ी-बड़ी कांच की खिड़कियां और उस पर सफेद रंग के परदे लगे हुए दिखाई दे रही है।

यह एक घर दिखाई दे रहा है जिसका बोर्ड पे लिखा हुआ है आर_डी टायर और टायर बना हुआ है और का--

वॉश लिखाया हुआ है बोर्ड पे और अंदर बहुत ही अंधेरा है और दीवारें कुछ सफेद रंग की है बोर्ड नीले रंग का है ।

और कार्ड लिखा हुआ जो सफेद रंग का है बोर्ड पे कार बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जहां पर गमलों में छोटे-छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रही हैं और एक बैठने का चेयर बना हुआ है उसके बगल में ठीक--

दीवारे जो सफेद रंग का है और आसमान एकदम नीला और सफेद रंग का और एक किनारे में कार दिखाई दे रहा है।

मध्य आपले सहस स्वागत यहां बहुत सारे आदमियां--

आते जाते हुए दिखाई दे रही है एक आदमी लाल रंग का शर्ट पहने बैग लिया हाथ में कागज लिए जाते हुए दिखाई दे रहा है.

पर एक सफेद रंग का शर्ट पहने एक अंकल फोटो लेते हुए और कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ।

बगल में एक छोटा सा दुकान है जहां पर चिप्स कुरकुरे रखा हुआ है।

और कुछ ऊपर में डिब्बे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं.

ठीक बाहर में एक सफेद रंग का एंबुलेंस दिखाई दे रहा है और बोर्ड पे रेंबो बना हुआ दिख रहा है.

ने गिट्टी बालू सीमेंट उठाते हुए सिर पर लेकर जा रहे हैं जहां लकड़ी का सीढ़ी बना एक पोल दिखाई दे रहा है।

कुछ ईटे बालू और गिट्टियां बहुत सारी दिखाई दे रही है बहुत सारे लेबर मजदूर दिखाई दे रहे हैं.

और एक मशीन दिखाई दे रहा है जिसमें गिट्टी सीमेंट बालू को मिलाया जाता है.

ऊपर में दो पंखे जो काले रंग का है और दीवाल का रंग नीला है.

पिलर भूरे रंग का दिखाई दे रहा है एक बहुत ही बड़ा मटका एक टेबल फैन भी दिखाई दे रहा है.

अ रेक के ऊपर कुछ प्लेटें दिखाई दे रही है बहुत सारे टेबल चेयर जो लाल रंग में है दिखाई दे रहे हैं.

यह एक मॉल है जहां पर एंकर में कुछ रंग-बिरंगे कपड़े टंगे हुए हैं और बोट पे पोस्ट स्टाइल लिखा हुआ है.

यह एक बहुत ही बड़ा और पुराना स्थल दिखाई दे रहा है ऊंची-ऊंची दीवारें--

और दीवारी के ऊपर भगवान बने हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे आदमी औरत आते जाते दिख रहे हैं जिसमें से एक लड़का--

काला रंग का शर्ट पहने हुए जाते दिख रहा है एक आदमी काला शर्ट --

सफेद पेंट पहने दिखाई और गमछा लिए हाथ में एक बैग लिए जाते हुए दिख रहा है.

यह एक बहुत ही पुराना दीवार है और वहां से सीढ़ियां जाते हुए दिख रही है सीढ़ियों के बीचो बिच--

और एक पेड़ जो सूख का नीचे गिरा हुआ है और एक हरा भरा पेड़ है जो दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का है।

और एक लड़की सफेद और संते घर की पेंट पहनी है जिसने हाथ में एक बैग लिया हुआ है.

वगैरह ऊपर में लगी हुए स्टैचू का रंग एकदम सफेद है.

यह एक दुकान है जहां पर छोटे-बड़े पंखे लाइन बाय लाइन सजाए हुए दिख रहे हैं.

पंखे के ऊपर लिखा है केमस्टोन लाइटें वगैरा गुड नाइट मोड वगैरा दिख रही है।

यह एक बैंक है जिस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कैनरा बैंक जो नीले रंग का लिखा हुआ है.

दो बाइक नजर आ रहे हैं जो लाल और काले में बाहर में खड़े हैं.

बहुत बड़ा कांच का गेट उसके अंदर एक आदमी जो सफेद रंग का शर्ट पहने हुए दिख रहा है उसके ठीक किनारे में एक आदमी चेयर पर बैठे हुए दिख रहा है।

यहां पर बहुत बड़े-बड़े घरे दिखाई दे रहे हैं.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

और वहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर--

दो लड़के दिख रहे हैं जिन्होंने एक काले रंग का शर्ट पहना हुआ है राउंड एकदम साफा है.

और आसमान एकदम नीला दिखाई दे रहा है.

ये एक घर है जहां पर बहुत सारे चेयर दिखाई दे रही है और वहां पर काले रंग की चेयर है चेयर के ऊपर एक पीले रंग की प्लास्टिक दिखाई दे रही है।

यह एक छोटा सा दुकान है जहां पर भगवान जी का तस्वीर शंकर भगवान और पार्वती का तस्वीर और उस माला.

और बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्ला लस्सी वाला लस्सी तीस रुपया दही--

ये एक जगह है जहां पर बैनर में नीले रंग का लिखा हुआ है ड्राई की--

दिखाई दे रही है और एक टावर दिखाई दे रहा है.

बहुत सारी यहां पर टेबल डस्ट बिन वगैरह--

यह एक छोटा सा किराना का दुकान है जहां पर तरह-तरह के चीज जैसे चिप्स कुरकुरे--

यह एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है डेली डोज़ सोनी बे --

एक राय और एक बैनर और ठीक नीचे में बड़े-बड़े.

कांच की किड़कियां भी दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है.

दिख रही है दो कपल भी किनारे में फोन यूज करते हुए दिख रहे हैं.

तीन आयने भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लाइट जो लटके हुए दिखाई दे रहे हैं.

यह एक छोटा सा कैफे दिखाई दे रहा है जहां पर रंग बिरंगे चेयर्स टेबल्स दिखाई दे रही है कुछ कांच के टेबल भी बने हुए हैं.

यह एक घर दिखाई दे रहा है जहां पर दीवार पर तरह-तरह की डिजाइन बनी है जैसे गुब्बारे वगैरह बनी हुई है रंग-बिरंगे गुब्बारे--

यह एक घर दिखाई दे रहा है जहां पर दीवार में लिखा हुआ है--

फ्रंट एरिया भी खुला हुआ है और कार का रंग काले कलर का है.

दिखाई दे रहे एक आदमी जो सफेद रंग का शर्ट पहने कुछ सामान ले रहा है और अगल-बगल कुछ कपड़े की दुकानें सूट वगैरह दिखाई दे रही हैं.

यह एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है कुछ तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं जहां पर माइक लगा है वह सादा रंग के कपड़े से ढका है।

यह एक हॉस्पिटल है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है.

डॉक्टर राजपाल न्यूरोफिजिकल हॉस्पिटल लिखा हुआ है.

और पर्दे दिखाई दे रहा है जो भूरे रंग के पर्दे हैं और कुछ गेट के बाहर में बेसिन बने दिखाई दे रहे हैं.

दीवाल के रंग एकदम सफेद है और एक स्टैचू जो टॉप और ब्लैक रंग का जींस पहने दिख रहा है.